यह एक ईसाई धर्म मानने वालों का एक पौराणिक संस्थान है जहां पर लोग आके अपने जीसस के सामने प्रे भी करते हैं और यहां --

लगता है जो हरिद्वार क्षेत्र सोनपुर मेला अ-अ लगता है यहाँ मेला बहुत बड़ा और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होतें हैं यहाँ पर बहुत सारे --

समान भी मिलते हुए अलग-अलग प्रकार के स्टोर भी लगाए और बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत ही अच्छा जगह है और काफी --

एम्म भगवान की प्रतिमा वगैरा एवं सोने चांदी के बहुत अच्छे एवं आकर्षक उपहार --

यह पुल बहुत ही बड़ा और बहुत सुंदर है और यहाँ पर काम बहुत अच्छा चल रहा है जिससे लोगों को बहुत ही सुविधा होगी ।

और ये पुल बहुत ही लंबा और एक नदी पे बनाया जा रहा है जो रेलवे पुल है और बहुत ही बढ़िया और बहुत --

एक बैंक ए.टी.एम. है जो प्राइवेट बैंको में आता है | फ़ेडरल बैंक ए.टी.एम. है यहाँ पर |

और यहाँ पे लोग ए.टी.एम. में एक डिपॉजिट और जमा दोनों ए.टी.एम. यहाँ पर है जिससे लोग निकाल भी सकते हैं और कॅश को जमा भी कर सकते हैं।

सभी प्रकार के घरेलू सामान उपलब्ध रहते हैं और काफी अच्छे और सस्ते दामों पे उपलब्ध कराया जाता है यहाँ पर चारों साइड एक काउंटर बनाया गया है यहाँ पर --

एवं मुख्य द्वार अतिथियों के आने के लिए एक रेड कारपेट भी बिछाया गया है जो काफी आकर्षक और मनमोहक दिखाई दे रहा है बहोत बढ़िया।

ते यहां पर नेटवर्क वगैरा कॉलिंग वगैरा इस नेटवर्क के कारण बहुत बढ़िया रहता है।

हिंदू धर्म के मानने वाले ये त्योहार के प्रतिमा जहां पे लोग एक पंडाल बनाए गए है जो लाइटों से बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है एवं बहुत अच्छा डेकोरेट --

किया गया है यहां पर माता के दर्शन करने के लिए हिंदू धर्म लोगो की मानने वाले यहां पर पूजा करने के लिए आए हुए है और कतारबद्ध में आ के माता का दर्शन कर रहे है जो यहां पे बहुत अच्छा --

विभाग के कारण सरकारी कर्मचारी बैठते है जो जनता की अ अ सुविधा के लिए बहुत ही अच्छा काम करते है यहां के कार्मिक बहुत ही अच्छा और समय पे काम करते हैं।

और उचित मूल्य पर बढ़िया काम यहाँ पे होता है।

यह एक बस स्टैंड यह एक बस स्टैंड है जो काफी अअ दूरी में फैला हुआ है बस स्टैंड बहुत ही साफ-सुथरा है एवं बढ़िया बनाया गया है यह सब आकर्षक बनाने के लिए इस बस के चारो ओर --

यह एक सरकारी कार्यालय एवं श्रम भवन है जिसका नाम संयुक्त श्रम भवन है यहां पर सरकारी काम किया जाता है एवं ये बिल्डिंग काफी बड़ा है एवं अनेक --

स्तर के बड़े-बड़े अधिकारी यहां पर बैठते हैं और लोगों की समस्या को भी देखते हैं।

एम कॉलेज में बहुत ही बढ़िया पढ़ाई होता है यहाँ बहुत से आधुनिक के संसाधनों से भर-पूर यहाँ के टीचर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं।

लोग अपनी शादी विवाह भी करते हैं यहाँ पर लोग आके अपना प्रेयर करते हैं और बहोत ही बढ़िया और काफी अच्छा बहोत बड़ा ए --